पर्दा भी लटका हुआ है।

यह एक कपड़े दुकान का दृश्य है इसके दीवार की कलर क्रीम है और ऊपर में छोटे छोटे व्हाइट बल्ब लगाए हुए हैं और उसके ऊपर की दीवार में व्हाइट पुट्टी किया हुआ है।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

दुकान के ऊपर पोस्टर पर पकवान वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

इस दुकान के बाहर में नीचे फर्श लगा हुई है और बाहर में चार टेबल और दो चेयर रखें हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट में खिड़कियाँ भी हैं और ढेर सारे परदे लटके हुए हैं।

घर के सामने कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

टेज के दूसरे तरफ तीन जज भी है।

यह एक बाइक शोरूम का दृश्य है इसके आगे बोर्ड पर मां वैष्णवी ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है।

इस बिल्डिंग का कलर ब्लू और वाइट है।

यह एक कार सर्विस का दुकान है इस दुकान के बोर्ड पर बोश कार सर्विस लिखा हुआ है।

इस दुकान का कलर क्रीम है और ऊपर में रेड बॉर्डर कीया गया है।

दीवाल में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक खेल के मैदान का दृश्य है इस मैदान में ढेर सारे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं।

इस मैदान में एक साइकल भी है।

इसके बगल में एक स्कूटी खड़ी है।

और कुछ लोग बाइक पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

रोड के किनारे एक बैलून की दुकान है।

यह एक छोटे से रेस्टोरेंट का दृश्य है रेस्टोरेंट के ऊपर में करकट लगा हुआ है।

दीवार में एक एल_इ_डी टी_वी भी लगा हुआ है।

इस कमरे में एक काउंटर है और काउंटर पर ढेर सारे मिठाई का डब्बा और बोतल और कुछ पेपर रखा हुआ है।

इसकी सीलिंग में एक कैमरा लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है।

यह एक मिठाई दुकान का दृश्य है।